अ आजू-बाजू में बहोत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे हैं और बहोत ही खूबसूरत बिल्डिंगे हैं जो कि ये दो दो-दो फ्लोवर तीन-तीन फ्लोवर में ये बिल्डिंग है खंभे पिलर से --

अ ये फंक्शन वाला मतलब कोई एक जगह है मतलब जीसको लाउंज वागैरा लॉन बोलते है।